यहाँ पर हम एक सफ़ेद रंग का घर भी देख सकते है उसके पास मै ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो जामुनी रंग की शर्ट काला बैग लेकर --

यहाँ पर हम देख सकते है एक बड़ी ईमारत दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद रंग की है और काच की खिड़की दिखाई दे रहे है।

यहा पर हम देख सकते है एक बड़ी नदी दिखाई दे रही है उसके उपर नाव रखी हुई भी नजर आ रही है कई सारे लोग नाव के उपर बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

पेट्रोल भरवाता हुआ नजर आ रहा है उसकी गाड़ी मै उसके गाड़ी के उपर एक सफ़ेद रंग का थैला रखा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे एक शटर दिखाई दे रहा है काले रंग का जो की बंद नजर आ रहा है उसके पास में ही एक गमला भी दिखाई दे रहा --